आके तेल भराते हैं यहाँ पर तरह-तरह के गाड़ियां तेल भराए जाती है।

तस्वीर भी काटा गया है यहाँ पर एक आदमी --

एक औरत बैठी है यह आदमी सिरिंज में दवा भर रही है।

कुछ आदमी खड़े हैं यहाँ एक आदमी का प्रतिमा भी --

एक गेट है उसमें गनतंत्र द्वार लिखा हुआ है।

यह कोलेज राजकीय पोलिटेक्निक लखीसराए का है ।

कॉफी को चाय की तरह बनाया जाता है। यहाँ पर बहुत से आदमी आकर कॉफी पीते है। यहाँ बहुत भीड़ भी है। यहाँ दुकानदार भी है |

तस्वीर भी साटा गया है यहाँ पर एक आदमी --